ये घर है जो से बनाया हुआ है।

यहाँ में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है येलो कलर का।

पीला भी दिखाई पड़ रहा है सफेद कलर का।

ब्लैक कलर का दो कप्स दिखाई दे रहे जिसमें चाय रखा हुआ है।

चम्मच दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का।

मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का।

बड़ा आदमी दिखाई भी पड़ रहा है और बहुत सारा तार भी दिखाई दे रहा है।

में बहुत सारा ओरेंज और अप्पेल दिखाई दे रहा है।

सफेद फेसिंग दिखाई दे रहे जो लोहा से बनाया गया है।

बोहोत सारा फ्लावर पोट दिखाई दे रहा है ब्लैक ओर ब्राउन कलर का है।

पपया का ट्री दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का है और यलो कलर का भी है।

यहां हमें एक सुमो दिखाई दे रहा है जो ग्रीन व्हाइट ब्लैक कलर से बनाया हुआ है।

ये एक घर है जो सफेद और रेड कलर से बना गया है।

बहुत सारी लड़कियां दिखाई दे रहा है जो अरेंज रेड पिंक और व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

ओ कुर्सी दिखाई दे रहा है जो ब्लैक और सफेद कलर से बनाया हुआ है।

चेयर भी दिखाई दे रहा हैं। ब्लैक कलर का और एक बोटल दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है रेड कलर का।

बहुत सारा पेड़ दिखाई पड़ रहा है और एक घर दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है और टीना दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का।

लड़का दिखाई दे रहा है जो ब्लू शर्ट वो ब्लैक पैंट पहना हुआ है।

बहुत सारा क्लिप करके रखा हुआ है क्लिप से जो रेड कलर का है।